हमें यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं औरतें दिखाई दे रही हैं हमें यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हमे यहाँ पर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है और लोग भी --

बौत सारे लोग दिख रहे हैं मास्क दिख रहीं हैं हमे बहोत सारे बैग दिख रहे हैं जोकि ब्लू ब्लैक कलर के हैं आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं।

हमें यहाँ पर दुकान दिख रही है। बहुत सारी फिशेस दिख रही हैं हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं बोर्ड दिख रहे हैं येलो कलर के बहुत सारे कबर्ड दिख रहे हैं फिशेस दिख रही हैं मशीन्स दिख रही हैं।

हमे यहां पर बोहोत सारे बलूंस दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के हैं। बाइक दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की है। दो लड़कियां दिखाई दे रही है। हमें एक फोन दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और यहां पर लोग दिखाई --

हमें यहाँं पर बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है हमें ब्रिज दिखाई दे रहा है जो पत्थर का बना हुआ है बहुत सारे पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं हमें यहाँं पर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।